जहा पर बहुत सारी गर्ल्स ने फ्रॉक पहन रखी है। वाइट और पिंक कलर की।

यहाँ पर हमें एक नील कलर का बास्केट दिख रहा है।

एक अगरबती भी हमे यहाँ पर दिखाई दे रही है जलती हुई।

यहाँ पर हमें एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा हैं जहाँ पर चेयरें लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

सामने पी.सी. रखा हुआ दिखाई दे रहा है। एक चेयर रखी हुई दिखाई दे रही है। बहोत सारे कागज रखे हुए दिखाई दे रहे है ऊपर यहाँ पर हमें टैब ट्यूबलाइट --

यहाँ पर हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ऑफिस की जहाँ पर बोहोत सारी खिड़कियां भी हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं दरवजे दिखाई दे रहे हैं।